यह एक पार्क है। यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं।

ये समर बस स्टेन है।

समझ लिए यहाँ छठ पर्व मनाया जाता है।

और यहाँ शादी होने वाला है और य --

बातें करनी अच्छी बातें रोड पर नहीं है कोई रिक्शा चलाते हैं।

उम उनका सभी आनंद लेते हैं आनंद का मजा बहुत ही अच्छा होता है।

और यह चीता का ही जैसे ही हमसकल बनाया गया है।

म म मूर्ति बहोत ही फ्रेश देखने में अच्छा लगता है उसके साइड में किताब कॉपी है।

अ और ऊपर बड़े-बड़े वृक्ष हैं।

यह एक सुनसान जगह है।

पसिंजड़ की जाँच हो ड़ही है।

और यहाँ एक व्यक्ति घूमने आते हैं और र्दसन करते हैं।